ओरेंज ऑरेंज कलर के यहाँ पे काफी सारे रखे हुए है और कुछ कागज टूटे हुए रखे होगे कुछ पेकेट भी रखे हुए है आज उनके रेट लिखी हुए होगे बोतल है बोतल रखी हुई है सामने।

यहाँ पर प्रेस अल फ्रिज कूलर ऐ.सी. टी.वी. सबकुछ मिलता है।

व है ये की दुकाने हेंगी।

सामने की तरफ बड़ा सा खंभा आएगा उसके तार एक दूसरे से खंभे से मिले हुए रहेते होंगे यहा पर बड़े पेड़ भी है ये ग्रीन कलर के आसमान है।